एक आदमी खड़ा है ड्रॉअर बने हुए है दराज बने हुए है और फल भी रखे हुए है सामने में ।

यहाँ एक सड़क जा रही है और उसके बाद बहोत सारी यहाँ पे इमारते आ रही है जहाँ जो बैंक है उसपे एस_बी_आई बैंक लिखा हुआ है सीढ़ियां बनी हुई है बहोत |

इस तस्वीर में बोहोत सारे एक दुकान है जहाँ पर शीशे लगे हुए है शीशे पर आइडिया की सिम के एक बाहर में पोस्टर लगा हुआ है और सीढ़िया बनी हुई है सटर लगा हुआ है सटर पीले कलर का सटर है।

एक नदी जा रही है जिसमे बहोत बड़ी नदी है और उसके बगल में बहोत बड़ा पहाड़ है जहाँ पे बहोत हरियाली है।

यहाँ एक का अक आदमी खड़ा है बाहर में वहाँ पे और एक बाल दाढ़ी का स्पा सैलून है वहाँ पे एक शीशे लगी हुई है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं सीढ़ियों पर टाइल्स लगा हुआ है।

यहा से बीच से एक रास्ता जा रहा बीच में एक मूर्ति लगी हुई है जहा मोमबत्ती जली हुई है झंडे लगाए हुए है और बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई है।

यहाँ पे कारपेट बिछी हुयी है यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए है कुछ लोग खड़े है और कुछ लोग चल रहे है वहाँ पे लाईटे लगी हुयी है बहुत सारी झंडे लगे हुए है ऊपर में।

और बाहर में उसका मेनू चार्ट लगा हुआ है बहुत सारे लोग वहा खड़े हुए--कुछ लोग बैठे हुए-- प्लेटफ़ॉर्म पे टाइल्स लगी हुयी है नीचे में फ्लोर--

ऊपर में बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ है जिसका नाम दुकान का नाम अनमोल है और यहा पे दो लोग अंदर में खड़े हुए है एक बो--